यहाँ पे बहुत तारे टमाटर का पेर है बहुत सारे टमाटर भी है एगो आदमी दवाई दे रहा है देखने मे भी हरा-हरा पेड़-पौधे है पेड़ है बड़ा-सा।

और एक मिट्टी है रखा हुआ आदमी भी है एगो।

और है लेकिन वहाँ पे भी रहती है। दिखने में भी बहुत खूबसूरत है खिड़की भी लगा हुआ है।

खाना भी देखने मे बहुत खूबसूरत है दरवाजा भी है साथ मे।

दिखने में ये बहोत सारा घर है।

कोई देख रहा है बहुत खूबसूरत --

आदमी हैबहोत सारे नदी में पानी भी बहोत खूबसूरत है।

एक आदमी सब चल रहा हैं जिसमे खूबसूरत दिखाई दे रहा --